और फूल का पेड़ है गाँधी जी का मूर्ती बनाया गया है और बहुत अच्छा अच्छा चीज है घास है।

और खिड़की है ए.सी. लगा हुआ है कूलर भी --